ये तो दुल्हन के गाड़ी लगल छै दुल्हन भी सजल छै।

छै व्हाइट कलर रूम छै आदमी सब छै ।

इनका इस गाड़ी काफी अच्छा हो।